अ अन्डर्वेर वगैरा मिलती है और जो कि मैंन है वो डेली यूस मे युस करता है। जिसको पहेन के वो कम्फ्टबल फ़ील करता है जो कि एक बहोत नेसिसेरी चीज होती है ज-जो हर कोई यूस करता है।

जोकि हम यूज करते हैं। फंक्शनस वगेरा किसी चीज की डेकोरेशनस के अंदर और साथ मे जो धार्मिक पलेसेस होते हैं और वहाँ के डेकोरेशनस के लिय और भगवान के अर्पित करने के लिय भी आपन ये फ्लोरस है वो यूज करते --

बहुत ज्यादा जो इसके अंदर प्र ओ जो अ अमाउंट होती है। प्रोटीन न्यूट्रिएंत्स की वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है और लगभग हर त्योहार वगेरह पे और हर एक जगह पे इसे यूज किया जाता है।

और बहुत प्यारे से अरैन्ज होते एक प्रोपर मॅनर के अंदर ये अरैन्ज होती हैं।

ये अ इससे क्या होता है पहाड़ मे चढ़ने में आसानी होती है फिसलने विसलने का डर कम रहता है और बहोत बहोत स्मूथली अपन पूरा अ पूरा ऊपर तक चढ़ जाते हैं।

ये बच्चो का झूला है जिसके अंदर बच्चे झूल के बोहोत अच्छा मेहसूस करते हैं बोहोत अच्छा फील करते हैं। हर एक गार्डन वगेराह के अंदर आपको ये देखने मिल जाएगा।

एक मछली मार्केट है। जहां पर मछली बेची जाती है खाने के लिए यूज की जाती है। मछली थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन इसके अंदर न्यूट्रीशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बहुत लोग है वो खाते है बनाते हैं।